नमस्कार electromagnetic induction पर इस tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न दिखायेंगे:
यहाँ मैं उपयोग कर रही हूँ:
इस tutorial के अनुसरण के लिए आपको expeyes junior interface के साथ परिचित होना चाहिए यदि नहीं तो सम्बन्धित tutorials के लिए कृपया हमारी website पर जाएँ
electromagnetic induction के प्रदर्शन से शुरू करते हैं
इस परीक्षण में 3000 घेरों वाली coil के तारों को ground gnd और a1 से जोड़ा गया है
चुम्बकीय प्रभाव दिखाने के लिए एक 5mm व्यास और 10mm लम्बाई की चुम्बक उपयोग की गयी है
अब plot window पर परिणाम देखते हैं
plot window पर क्षैतिज ग्राफ दिखता है एक काग़ज़ को roll करें और इसे coil के अंदर डालें
rolled किए हुए काग़ज़ में इस चुम्बक को डालें और इसे ऊपर और नीचे घुमाएँ
इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएँ जब तक induced voltage यानि प्रेरित voltage न आ जाये और प्रदर्शित न हो जाए
plot window पर experiments button पर click करें
select experiment सूची दिखती है em induction पर click करें
दो नई windows electromagnetic induction और schematic दिखती हैं
electromagnetic induction window पर start scanning button पर click करें क्षैतिज ग्राफ wave में बदलता है
यह तब होता है जब voltage की periodic scanning और चुम्बक की गतिविधि एक साथ होती है
यह दिखाता है कि गतिमान चुम्बक द्वारा coil में voltage इंड्यूस्ड यानि प्रेरित होता है
आगे मैं दो coils का mutual induction यानि पारस्परिक प्रेरण दिखाऊँगी
इस परीक्षण में a2 sine से जुड़ा हुआ है sine coil के द्वारा ground gnd से जुड़ा हुआ है
और a1 coil के द्वारा ground gnd से जुड़ा हुआ है यह circuit diagram है
अब plot window पर परिणाम देखते हैं
a1 पर click करें और ch1 तक खींचें a1 ch1 को निर्दिष्ट किया जाता है
a2 पर click करें और ch2 तक खींचें a2 ch2 को निर्दिष्ट किया जाता है
applied waveform और induced waveform को देखने के लिए msec/div slider को खिसकाएँ
बदलता हुआ चुम्बकीय क्षेत्र induced voltage का कारण है आप द्वितीयक coil पर कोई भी induced voltage नहीं भी देख सकते हैं
coils को अक्ष के समानांतर एक दूसरे के पास रखें axis की दिशा में कोई ferromagnetic लौहचुम्बकीय वस्तु डालें
द्वितीयक coil पर voltage प्रेरित induce voltage करने के लिए हमने एक पेंचकस डाला है
ch1 पर click करके fit तक खींचें ch2 पर click करके fit तक खींचें
दायीं तरफ a1 और a2 की voltage और आवृत्ति दिखती है
आगे हम dc motor और coils उपयोग करके घूमती हुई चुम्बक द्वारा प्रेरित voltage दिखायेंगे
इस परीक्षण में
एक 10mm व्यास और 10mm लम्बाई का स्थायी चुम्बक dc motor पर जोड़ा गया है
यह circuit diagram है
अब plot window पर परिणाम देखते हैं
setting square waves में आवृत्ति की value को 100hz पर set करें sqr2 check box पर click करें
a1 पर click करें और ch1 तक खींचें a1 ch1 को निर्दिष्ट किया जाता है
a2 पर click करें और ch2 तक खींचें a2 ch2 को निर्दिष्ट किया जाता है
wave form को प्राप्त करने के लिए msec/div slider को खिसकाएँ
ch1 पर click करें और fit तक खींचें
दायीं तरफ आप voltage और आवृत्ति देख सकते हैं कृपया ध्यान दें दो वैकल्पिक वेवफॉर्म्स की voltage और आवृत्ति लगभग समान है
यह इसलिए है क्योंकि जब चुम्बक घूमता है तो coil के चारों तरफ poles के बीच चुम्बकीय क्षेत्र निरन्तर बदलता है
चुम्बक का घूमना coil में alternating induced emf देता है
आगे चालित लोलक के साथ परिक्षण करते हैं
अगर एक लोलक induced magnetic field यानि प्रेरित चुम्बकीय क्षेत्र के साथ दोलन करता है तो यह driven pendulum यानि चालित लोलक कहलाता है
इस परिक्षण में coil उपयोग करके sqr1 ground gnd से जोड़ा गया है
button चुम्बकों को लोलक की तरह कागज़ की पट्टी के साथ coil के आगे लटकाया गया है यह circuit diagram है
अब plot window पर परिणाम देखते हैं
sqr1 check box पर click करें
experiments button पर click करें select experiment सूची दिखती है driven pendulum चुनें
दो विन्डोज़ दिखती हैं
eyes junior: driven pendulum window पर slider को खींचें जैसे ही हम slider को खींचते हैं लोलक दोलन करता है
अधिकतम आयाम के साथ लोलक 26 hz से 29hz के बीच दोलन करता है
इसे सारांशित करते हैं
इस tutorial में हमने निम्न दिखाना सीखा:
एक नियत कार्य में दिखाएँ कि एक electromagnet विद्युत चुम्बक कैसे बनाते हैं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
हम spoken tutorials का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाते हैं और प्रमाणपत्र देते हैं कृपया हमसे संपर्क करें
spoken tutorial project भारत सरकार के mhrd के nmeict द्वारा निधिबद्ध है